इसमें रंग-बिरंगे लाइट जल रही है और इसमें सोधार पौधा भी लगा हुआ है।

यहां पर कोई चीज का डिस्कस चल रहा है जिसमें बहुत सारा आदमीमियां है लाइट भी जल रहा है कितने आदमी भी खड़ा है कोई न्यौरा हुआ है।

देखने से लगता है पार्क है ए पार्क बहुत सुंदर है।

ये सीतामढ़ी का जगह है जो सुरभि साड़ी शोरूम है प्रवीण स्टोर भी है वहां पर लिखा हुआ है सब रंग का साड़ी और सूट भी बिक रहा है।